यहाँ पर भी बहुत बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है पहाड़ी पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।